सामने की ओऱ एक अलमारि बनी है।

और आस पास कई पेड़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक दुकान की है जिसमें कि कई-सा सामान रखा हुआ है।

यहाँ एक आदमी स्कूटी पर बैठा हुआ है।

और यहां पर बहोत सी लाइटे भी दिख रही है।

और वहां एक दीवाल के ऊपर रखा हैजो की हरे रंग की है |

नीचे सफेद कलर की फर्श भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं।

और हरी-हरी घासे भी यहाँ पर दिखाई दे रही है।

और यहां पर मिट्टी भी पड़ी हुई है और गिट्टीया पड़ी हुई है।